ये एक बैंक है यहा पर एक कार खड़ी है दो लोग जा रहे है दो बाइक खड़ी है एक पर हेल्मेट लगा हुआ है।

यहाँ बहुत सारे बच्चे है क्लास मैं बैठे हुए है एक मेम है बच्चे अपना काम कर रहे है सब अपना अपना सब क्लासेस मे अपना वर्क कर रहे है।

और एक बोर्ड क्लब लगा है सामने।

यहाँ पर कुछ लड्कीया फोटो खिचवा रही है अपनी सब के सब कुछ लोग बैठी है कुछ लोग खड़िया है लड्कीया है सब।

इसमे एक भाई मोबाइल लेकर अपनी सेलफ़ी ले रहा है।